इमेज किसी कारखाने का शो हो रहा है जहाँ पर एक ऑटो रिक्शा है।

ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा है ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का | इसमें आगे का पार्ट है और ये कारखाना जो है वो तिवाल का है और टी-शेड ऊपर से लगे हुए हैं इसमें।

इमेज में एक ऑटो शो किया जा रहा है ऑटो का कलर जो है वो पिंकिश रेड है।

रेस्टोरेंट का पिक्चर है जो कि बाहर से लिया गया है। रेस्टोरेन्ट की अ वाल्स का कलर जो- अ है की व्हाइट है।

इसमें अ- टेबल्स लगी हुई हैं। टेबल्स को डेकोरेट किया गया है। आजू बाजू चेयर्स रखी हुई हैं। सोफे रखें हुए हैं। सामने एक वॉल है। जहां हैप्पी बर्थडे करके सजाया है।

जी बहुत हरियाली दिख रही है जिसकी वजह से बिच में एक चबूतरा है जिसमें एक स्टेचू बना हुआ हैरीलिंग से यह चबूतरा पूरा कवर है |

और दुकानों में शटर गेट लगा हुआ है शटर गेट का कलर ब्राउन एंड रेड है कुछ बाइक्स है जो दुकानों के बाहर खड़ी हुई है और एक बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर उमेश डिग्नोस्टिक --

मंदिर के बाहर से ये फोटो लिया गया है| एक मंदिर का फोटो है| मंदिर का कलर जो हे वो व्हाइट है| ऊपर गुम्मत लगे हुए है।

ये किसी मार्ट का फोटो शो किया गया है जहा पे फोटो में दिख रहा है कि साइड में कुछ दुकाने हैं जो खुली हुई है और बनी हुई है।